मेरे ख्याल से यहाँ पे एक घर बनने वाला है जो गड्ढ़े है वो नीव के लिए खोदे गए है और यहाँ पर काफी अच्छी ब्राउन कलर की मिट्टी निकली है जोकि काफी अच्छी होती है।

यहां फोटो में दिख रहा है नजारा एक ट्रैक्टर के अ के उसका टायरों का है जिसमे एक सीएट टायरों का दुकान है जिसमे काफी सारे ट्रैक्टर्स के पहिए रखे हुए हैं जो की रबर के बने होते है और यहाँ पे सीएट के टायर हैं |